जिसका नाम भोगेश्वर फुल लक्ष्मी इनडोल स्टेडियम है।

और इस पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं यह बच्चा येलो कलर की शर्ट पहना है।

शोकैस टाइप भी दिख रहा है।

जहां पर एक रेड कलर की टी-शर्ट में अंकल खड़े नजर आ रहे हैं और हर थोड़ी दूरी पर--

और इसके ऊपर वाले पिलर परयेलो कलर की लाइंस लाइट्स लगी हुई हैं।

एक ही तरह के कपड़े पहनी हुई है।

जिस ढाबे का नाम जोगिंदर पंजाबी ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट है।

यहां परबहुत सारे लोगनजर आ रहे हैं बच्चों से लेके बूढ़े तक सब।

ये एक स्टेशन का सीन --

यह एक स्कूल फंक्शन का सीन दिख रहा है।

जहां पर ग्रीन और रेड कलर के कारपेट पर--

और इसके ऊपर एक कोलाज भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

उसके बाद वाइट और ब्लू कलर की कार खड़ी हुई है।

इसके आसपास पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

जैसे कि ऑरेंज और येलो कलर का मिक्स्ड कलर हो रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

पर वह टी_वी अभी बंद है।

यहां पर एक ट्रक और एक कार नजर आ रही है।

और उसके नीचे कुछ स्पोर्ट्स के कॉस्ट्यूम्स --

इन्हीं गजरों की शॉप के सामने एक येलो कलर की बस भी दिख रही है।